दीवारों पर पेंट किया गया है जिससे दर्शाया गया है की इस स्कूल में किस तरह की ओर किस लेवल की पढ़ाई होती है।

ये रंग-बिरंगी परते कितनी सुंदर लग रही है ये देख कर बहुत ही आनंद और --

पानी कितना सुंदर और यहाँ का माहौल कितना शांति --

कच-कच का माहौल नहीं है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

बहुत ही भारी संख्या मे लोगों का जमवाड़ा देखने को मिल रहा हैं।